इसपे पौधे लगे हुए हैं।

अ सड़क के किनारे उम्म घर है उसके नीचे खड़ी है कुछ बैनर लगे हुए है घर के ऊपर।